यहां बहुत सारे लोग हैं और बड़ी-बड़ी नाव खड़ी हुई और यहां खंभे भी लगे हुए है झंडे भी लगे हुए है और बाहर बहुत सारी गाड़ी है।

बहुत सारे लोग भी हैं यहां पास टायर भी लगे हुए --